साइड में एक बड़ी सी शेड दी--

और एक आदमी स्टैंड के पीछे खड़ा है।

ये एक शादी का हॉल है।

दुकान में सफाई की बहोत सारी चीजे रखी हुईं--

दुकान का नाम है सफाई गिरी स्वच्छता उत्पा--

वहीं कुछ मजदूर साइड में खड़े है।

ये एक होजरी की दुकान--

एक दो लेडिस मछलियां चेक कर रही है।

उस पे लिखा है अल्ट्रा टेक सीमेंट ।

इमारत के ऊपर बोर्ड लगा है।

ये बहु मंजिला इमारत येलो और ब्लू कलर से बनी हुई है।

ये एक बड़ी सी खेती दिखाई दे रही है जहाँ पे छोटे छोटे --

वही पूरी थीम बैलून से सजाई गई है।

साइड में एक आदमी बैठा हुआ है।

जहां पे टेबल और चेयर्स लगी हुई है।

ब्लैकबोर्ड पे लगा है हर्षदीप कलेक्शन ।

ये एक जिम दिखाई दे रहा है।

ये किसी ऑफिस का बीच का स्पेस दिखाई दे रहा है।

वहीं नीचे एक आदमी और औरत बैठे हुए हैं।

दुकान के बाहर फूलों की मालाएं लगी हुई है।

नीचे बड़ा सा ब्राउन बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लाइटें बंद है।

पैजामा कुर्ता पहने हुए फोटो खिंचवा रहा--

होटल के अंदर चहेल पहेल दिखाई दे रही--

टेबल चेयर्स रखी हुई हैं लाइटिंग की गई हुई है।

जहां पे बहोत सारे वॉइपर्स स्क्रबर्स झाड़ू वगैरा लगे हुए--

वहीं पे साबुन वगेरा अंदर जमा किए गए है।